घर का अंदर में बहुत ज्यादा लाइट बल है।

वो जो ब्लैक कलर से पेंट किए गए हैं।

कुछ पेड़ पौधा भी है जो ग्रीन कलर में है पेड़ का नीचे में भी दुकान है।

कुछ छतरी जैसा भी दिखाई दे रहा है जिसका सामने में जो एक घर है वो जो टीना लगा के है।

यहां में जो एक आदमी दिखाई दे रहा है ओ जो व्हाइट शर्ट पिन्ह के है।

और यहां में जो कुछ आलमारी टाइप का है वो जो लोहा से बनाने वाला है।

अंदर में जो बहुत ज्यादा बॉटल लोग दिखाई दे रहा है उसका ढक्कन जो रेड कलर में है।

बहुत ज्यादा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा घास भी है और सब जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है।

यह हमें जो एक क्लासरूम दिखाई दे रहा है क्लासरूम के अंदर में जो बहुत बैठ के है।

यहां में जो दस्ता दिखाई दे रहा इसमें जो बहुत लोग चल दिखाई दे रहा है।

कुछ बॉक्स सभी दिखाई दे रहे हैं एक फिल्टर भी है।

यहां में जो एक दुकान है दुकान का अंदर में जो बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ है।

मुझे एक बड़ा सा दिखाई दे रहे उसका अंदर में जो एक बार ऐसा मशीन है वो जो वाइट कलर में।

इस प्लास्टिक से कवर कर के भी है उसके पीछे में जो बहुत ज्यादा सामान दिखाई दे रहा है।

बहोत जादा पिलर भी है बहुत जादा लाइट बल्ब भी दिखाई दे रा है।

और ऊपर में जो एक छोटा सा घर जैसा दिखाई दे रहा है इसमें जो कुछ पीलर लोग भी हैं।

ये भी एक दुकान है दुकान का अंदर में जो एक टेबल है।

एक ब्लू कलर का कुछ फोटो ये सब भी दिखाई दे रहा है अंदर में जो बहौत ज्यादा सामान लोग है।

इसमें कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लाइट बल्ब भी हैं सामने में जो कुछ बड़ा सा छतरी है।

यह जो एक ऑफिस है और वॉल में जो कुछ लिखा हुआ है इसमें जो--

बहोत सारा इटा दिखाई दे रहे बहोत सारा घास लोग--

कुछ भी दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं आसमान जो व्हाइट कलर में है।

बहुत ज्यादा पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर में है आसमान जो व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है।

लड़की जो साड़ी पहन के है और वो जो कोट पहन के है।

भी है और एक बेडशीट भी बिछा के है।

ये जो एक मंदिर लग रहा है मंदिर का अंदर में जो बहौत ज्यादा भगवान लोग का फोटो भी दिखाई दे रहा है।

उसपे बहुत सारा लकड़ी भी दिखाई दे रहा है और एक आदमी खड़ा हो के भी है।

दो गोल पोस्ट भी दिखाई दे रहा है और उसका कोने कोने में बहुत सारा घर बना के है।

बहुत सारा पेड़ और पौधे भी दिखाई दे रहा है।